कुछ पतले पेड़ है और हरे हैं इसमें खंभे हैं और एक झूला डला हुआ है और आस-पास में रेलिंग भी है रेलिंग के बीच में कुछ पाइप की लाइनिंग भी है।

एक मॉल है देखने पर लग रहा है कि जहाँ पर प्लास्टिक का सामान मिलता है वह दुकान है| यहाँ पर काफी सारे डिब्बे रखे गए हैं कुछ बड़े डिब्बे हैं कुछ छो

घर में एक लाइट लगी हुई है और जो मस्जिद है मस्जिद के सामने एक ग्राउन्ड है।

ग्राउन्ड में के सामने जो है छोटी छोटी घासे उगी हुई है ऊपर की साइड आसमान है और कुछ चोटिया भी है।

ब-दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और उसमें एक मशीन भी रखी गई है जिसमें कुछ कोल्ड-ड्रिंक्स वगेरा रखे गए हैं।

डेक्स के ऊपर कुछ प्लेट और गिलास भी रखे हुए हैं और सामने की ओर चेयर हैं।